सामने एक आदमी जा रहा है जो साइकिल चलाते हुए जा रहा है जो बैग रखे हुए अगल-बगल बहुत सारे साइकिल जा रही हैं और सामने से एक बाइक आ रहा है सामने दो बिल्डिंग है बगल रोड के बगल में कूड़े को जलाया जा रहा हैं।

की अगल-बगल पेड़-पौधे लगाए गए हैं हरे-भरे पत्तियां है सामने एक बड़ी-सी बिल्डिंग है जो पीले रंग की है सफेद और नीले रंग की आसमान है।

उसके छत में बहुत सारे बॉक्स लगाए गए है लाइट लगाई गई है ऊपर का छत ऑरेंज और नीले रंग का है ऊपर भी लाइट लगी है जो सफेद रंग का है एक छोटा-सा घर है जो सफेद रंग की है बगल में एक ट्रौली खड़ी है जो लाल रंग की है नीले और सफेद रंग की आसमान है।

छोटा सा रेस्टोरेंट है चार टावर टेबल है जो पीले रंग की है।